यहा पे बहुत सारी खाली जगह है और एक लड़का खड़ा है और आगे एक बहुत बड़ी इमारत है।

यहा पे एक औरत है जिसकी मुँह पे आ मुँह के नीचे मास्क लगा हुआ है और बहुत सारे लड़के आ खड़े हुए है आ गाड़ियां खड़ी हुई है और पेड़ पौधे लगे हुए है।

ह रेती पड़ी हुए है पिल्स बनी हुए हैं और कुछ लोग है जो काम कर रहे है और एक चेयर है।